पोस्टर भी लगा हुआ है उस पर कुछ लिखा हुआ है दो खम्बो पर टिका हुआ पीले कलर का है।

सामने एक मकान है उसपर एक दीवाल पर कुछ एक सजावट है कुछ रंग बिरंगी झलरे डली हुई है।

और कुछ तो ऊपर लाइट भी में लग रही है और लाइट काफी सारी लाइट है और कुछ गमले लगे हुए है।

लक्ष्मन राम की लग रही है कुछ गाय भी छपी हुई है।